जिसके सामने एक भाई साब खड़े है और बुक सेंटर के अंदर बहुत सी प्रकार की बुक कॉपी किताब और पेन वैगरह उपलब्ध है।

और पीछे मे तीन चार लड़के बैठ कर वो भी कुछ पेपर वगहरा से बना रहे है सभी बच्चे अपना वर्क कम्प्लीट कर रहे है।

ये एक छठ घाट का व्यू लग रहा है जहाँ पर सभी लोग नदी मे हाथ जोड़कर खड़े हैं और बहुत सी औरते आपना ना अरग दे रही हैं ।

ये कोई छोटा-सा बजार लग रहा है जहाँ पर साइड में छोटा-छोटा दुकान है उसके सामने बहुत सारी ऑटो --

जा रही है आ रही है एक भाईसाहब झोला में कुछ लेकर जा रहे हैं और एक भाईसाहब अपना ऑटो में बैठ रहा हैं पीछे बहुत सारा पेड़-पौधा है।

ये कोई है जिसमे बहोत ही बड़े-बड़े बोरे है वाईट कलर मे जिसमे कुछ सामान लगी हुए है।

पीछे में पूरा हरा-भरा भ्यू है एक अम बहुत सारा मतलब पेड़-पौधे हैं वगेरा करकट का रूम भी है |